आदमी देख रहा है ये यहां पे दो तीन औरतें दीख रही है और यहां पे आप देख सकते हो --

और ये जिम कर रहा है और यहां पे लाल रंग के कपड़े--

आप देख सकते हो ये पर्दे देख रहे हैं।

ये यहां पे देख सकते हो ये मर्करी हुई है।

ऐ_सी लगी हुई है किताबें रखी हुई है और यहां पर देख सकते हो--

ये यहां पे देख सकते हो ये घर दिख रहा है और यहां पे पेड़ भी--

देख रहे हैं और ये यहां पे--

आप देख सकते हो ये बहुत सारे--

और यहां पे देख सकते हो पेड़ पौधे भी लगे हुए--